यहाँ पर सीलिंग का कलर मुझे वाइट दिखाई दे रहा है और सीलिंग के ऊपर लाइट भी लगी है यहाँ पर फर्श का कलर मुझे ऑफ वाइट दिखाई दे रहा है जो की देखने में मुझे बहोत ही अट्रैक्टिव और शानदार लग रहा है।

यह तस्वीर मे मुझे एक शॉप दिखाई दे रहीं हैंबहोत सारी शॉप दिखाई दे रही हैं और ये तस्वीर देखने पर एक मॉल की तस्वीर दिखाई दे रही हैं यहाँ पर बहोत ही सानदार डिस्प्ले दिखाई दे रहा हैंऊपर सीलिंग दिखाई दे रही हैं सीलिंग का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा हैं।

और एक दिखई दे रहा है अंदर की तरफ मुझे एक शॉप दिखई दे रही है ये शॉप दिखने मे किरण स्टोर जैसी दिखई दे रही है।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

तस्वीर मे मुझे एक खुला सा मैदान दिखाई दे रहा है जो कि वॉलीबॉल का ग्राउंड दिखाई दे रहा है और साइड मे ---

यहाँ पर मुझे पेट्रोल पंप का काउंटर दिखाई दे रहा है जो कि ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पर मुझे ज़मीन दिखाई दे रही है और ज़मीन का कलर मुझे येल्लो दिखाई दे रहा है यहाँ पर पेट्रोल पंप की टंकी का ढक्कन दिखाई दे रहा है आसपास बिल्कुल साफ-सुथरा है।